और फिवीको फेवीक्विक और गोल्ड लगा हुआ है।

खिड़कीये और गेट भी दिखाई दे रहा है।

घर का कलर व्हाइट दिख रहा है।

इस दृश्य में एक रूम का चित्र दिखाई दे रहा है।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

वहां पे व्यक्ति एक ईंटा बना रहे हैं।

एयर का कलर ब्लैक दिख रहा है।

इस दृश्य में व्यक्ति का चित्र दिखाई दे रहा है।

हाथ में एक अंगूठी और धागा पहना हुआ है।

और बहुत सारा पुराने घर दिख रहा है।

और बिल्डिंगे भी दिखाई दे रही--

इस दृश्य में सेमुन पूल के चित्र दिखाई दे रहा है।

और एक एक तकिया भी लगा हुआ है।

और पेड़ पौधे भी दिखाई--